चारो तरफ से एक कमरा है जो पीले कलर का पुता हुआ है सामने एक सामने एक घड़ी है उसके सामने एक पर्दा है एक आदमी है जिसके पैर एक जमीन पर एक ऊपर लटका हुआ है।

एक छोटा-सा लड़का है जिसके पंख है पीछे और उसने एक साइड से एक कॉपी दिए हुए है एक बगल से मोमबत्ती जल--

तरफ से उसमे चारो तरफ से उसमे नीले कलर की अ वो शटर लगी हुई है।